पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग को सफ़ेद कलर किया गया है सामने की और में एक टीन सेट लगा हुआ हुआ है

यहाँ पर बहोत बड़ा पुल बना हुआ है पुल के ऊपर की साइड में बड़ी बड़ी डिजाइनदार रेलिंग बनाई गयी है जो की लोहे की है।

दिखाइ दे रही है गली में तीन-चार रोड दी गयी हैं सामनेे की ओर में कुछ गाड़ियां रखी गयी हैं जिसमें से दो गाड़ी ढकी हैं और दो गाड़ी खुली रखी गयी हैं।

और देखने पर ये भी लग रहा है की यहाँ पे छिछाई हो रही है क्युकी यहाँ पे पाइपलाइन चल रहा है पाइपलाइन जो है उसपे पानी फेक रहा है और मोटा सा खंबा बना हुआ है जो की लोहे का है सामने की और में पहाड़ दिखाई दे रहे है काफी बड़े-बड़े पहाड़ है।